पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं बिच में बोहोत सारे लोग बेठे भी हुए हैं। साइड में आपको पानी का नल दिखाई दे रहा है।

गाइस जैसा की आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर बनी हुई है मंदिर के अंदर यहाँ जो हैं यहाँ पे जो है पोस्टर भी लगे हुए हैं दो बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं साइड में भी जो हैं।

हैलो गाइस जेसा की आप यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे आपको रोबोट का बना हुआ दिखाई दे रहा होगा पीछे जे आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है गाड़िया दिखाई दे रही है।

आइसक्रीम की भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाल्टी सामने रखी हुई। सामने आपको एक आदमी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारें लोग सब्जियाॅं खरीद रहे है।

और यहाँ पे बहुत सारे रैक्स भी बने हुए हैं। एंड नीचे आपको बहुत सारे सॉस दिखाई दे रही है और यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई है। आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे आगे देखिये बहुत सा --

-- जैसा कि आप यहाँ पर दख सकते हैं। यहाँ पे जो है बोहोत बड़ा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे आप देख्नेगे आपको बोहोत बड़ी बड़ी मूर्तिया नज़र आ रही होंगी और आप साइड में देख सकते हैं आपको बोहोत बहु सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं गमले दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।